एक रूम दिख रहा है घर का केवाडी-वेवाड़ी खिड़की केवाडी और सीढ़ी भी बना हुआ बांस रखा हुआ है ।

इधर रोड है रोड भी है और वहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है।